यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां रखी दिखाई दे रही हैं जिसमें से हरी लाल काली और कुछ साइकिल भी रखी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है और नदी के किनारे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं नदी के कुछ लोग नदी के अंदर है।

और कुछ शॉप नीचे है और कुछ ऊपर है नीचे वाले शॉप के ऊपर कुछ बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए है और ऊपर जीने के ऊपर भी बड़े-बड़े पोस्टर लगे है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहें हैं जो की एक लरी में हैं उसी के सामने एक कुछ छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहें हैं और उसी के सामने एक लेडिस भी खड़ी हुई है जिसने वाइट कलर की --